बहोत से लोग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नीचे लाल रंग के गुब्बारे पड़े हुए हैं।

साथ ही बहोत से दुकान भी यहां पर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

बहोत से बड़े पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं।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

एक्वेरियम के अंदर बहुत ही सुंदर पौधे और लकड़ियाँ दिख रही है।

सामने सफेद रंग की टेबल और नीले रंग की चेयरे लगी है।

एक कार भी दिखाई दे रही है।

कुछ खंभे भी दिखाई दे रहे है।

माल के अंदर हमें यहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

बहोत से पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक सफेद रंग की छतरी नजर आ रही है।

कुछ लोग हमें यहां दिखाई दे रहे हैं।

एक औरत मछली काटते नजर आ रही है।

बड़ा सा फ्रिज नजर आ रहा है।

कुछ पौधे नजर आ रहे है।